इसको देखने के लिये बहुत दूर-दूर से लोग इसको देखने आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सा और खिला हुआ सुरज उगते हैं ।

आदमी यहाँ खरीदने के लिए आते हैं जो कि कम पैसे में अच्छा बुक मिलता है और यहाँ पे बहोत दूर-दूर से लोग इसको खरीदने के लिए आते हैं।